जिसके सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं कुर्सी पर और अंदर एक डस्टबिन सा रखा हुआ है अंदर एक गेट है।

जिनके गोद में एक व्यक्ति लेटा हुआ है।

और सामने लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

यह एक डांस क्लास रूम है जिसमें एक लेडिस है डांस सिखा रही है बच्ची को और साइड में कुछ बच्चे खड़े हैं।

और रूम में बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

वो घास चर रहे हैं।

और सामने कांच की विंडो लगी हुई है। मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है सामने कुछ सामान पड़ा है।

यह एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें पानी का झरना बह रहा है।

यह एक ए_आर_आई सेंटर है जिसके सामने कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और कुछ महिलाएं हैं।